यह रॉयल एनफील्ड का शोरूम है।

इस तस्वीर में हमे एक शोरूम का --

इस तस्वीर में हमे यह दिखाई दे रहा है कि एक माली --

जो की राजस्थान के अंदर स्थित है।

इस फोटो में यह दिखाई दे रहा है की फैक्ट्री बहुत अधिक मात्रा में इस ग्राउंड पर फैली हुई है।

जो की पटना में स्थित है इस में --

इस शहर में बहुत सारी बिल्डिंग है जोकि बहुत उच्ची - उच्ची दिखाई दे रही है।

टोपी पहनी हुई है और --

उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है |

ध्यान मस्त मुद्रा में बैठे हैं और नमाज अदा कर रहें हैं।